और नीचे फूल बिछे यहां पर नीचे पार्क भी है।

यहां पर दो व्यक्ति बैठे हुए हैं और दो व्यक्ति खड़े हुए हैं।

यहां पर एक वाइट कलर की मशीन रखी हुई है।

और पूरे लाल कलर की इसमें कई सारे जंगलें भी हैं।

यह बेड पे गिरने वाली बेडशीट है।

यहां आदमी सीख रहे हैं पर्दे लगे हुए हैं चारों तरफ--

मोबाइल चार्जिंग पर लगा हुआ है जो शीशे के काउंटर पर रखा हुआ है।

नीले कलर के यहां पर थमले भी खड़े हुए है बहोत सारे--

ईंटों के पीछे ईंटों पर कलर हो रहा है लिपाई नहीं हो रही --

और साइकिलें खड़ी हुई हैं यहां पर और दो व्यक्ति बाइक पर जा रहे हैं।

और ऊपर से पानी बह रहा है नीचे आ रहा है यहां पर--

इस नदी मे बहुत सारे पेड़ खड़े हुए हैं।

और सब ने पीली रंग की टोपी ओड़ रखी है।

और ये बच्चा भी है और केले टंगे हुए हैं यहां पर गाजर भी--

यह एक दुकान है जिसमें कप रखें हुए है।

यहां पर बहुत सारी मछली रखी हुई हैं।

है जिसमें बहुत सारी लाइटे लगी हुई हैं रंग बिरंग--

यह ऊपर सीलिंग हो रखी है इसमें लाइटे लगी हुई है गोल्डन कलर की।

एक व्यक्ति पर ये फोन चला रहा है।

पीछे बड़े बड़े कांटों के पेड़ रखे हुए हैं।

यहां पर किसी गुरु जी को आश्रम बना हुआ है।

कैन रखी हुई हैं कुछ बोटले रखी हुई हैं यहां पर पानी की --

ऊपर व्हाइट कलर की पुट्टी हो रही है और बीच में लाल और नीले कलर की पुट्टी हो रही है इसमें--

यहां पर तीन ऑक्सीजन सिलेंडर रखे हुए हैं।

और दूसरी मंजिल पर यहां पर ये पीछे एक आदमी भी खड़ा हुआ है।